और हेलमेट भी रखा हुआ है वुडेन टेबल भी है उसके बगल में एक ओर वुडेन टेबल है।

एक लडका ब्लैक कलर का टी शर्ट पेहना हुआ हैं उसने --

अगल बगल बहुत सारे ट्रे भी हैं।

और ये आसमान में बहोत बादल छाए हुए हैं।

साइड में डस्टबिन बी हैं जो की ब्लू कलर का हैं --

उसके अगल बगल प्लांट्स भी हैं।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउन्ड है जिसमें हरे --

कुछ कार्टून्स हैं प्लास्टिक हैं हैं।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने एक झोपड़ी है जो बहुत खूबसूरत है अगल--

और साइड में एक झोपड़ी भी है जो कि बहुत खूबसूरत है और--

वाइट और ब्लैक कलर में है एक अंब्रेला भी है कलरफुल और एक आदमी भी बैठ हुआ है।

यह रात का समय हैं यहाँ पर एक शॉप हैं --

और इस शॉप के ऊपर में बाल गोपाल लिखा हुआ हैं --

ब्लू कलर का टी शर्ट पेहना हुआ है उसने अपने हाथ में कड़ा भी पेहन रखा है।

जो की खड़ा हैं उसके बगल में एक और लड़का हैं --

एक कर्टन का कलर ब्लैक और व्हाइट हैं और दूसरे --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं। मेरे सामने एक एच_डी_एफ_सी बैंक है।